एक लड़का उसके पास में खड़ा है।

एक बत्तख का रंग काला और सफेद है।

आस पास घास पूस और झाड़ियां है।

इनमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और इसके पीछे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं।

इसमें एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है।

टेबल पर कुछ दवाइयां रखी हुई है।

दुकान के ऊपर एक घर बना हुआ है।

दो बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हैं।

यह एक लड़की का टेबल बना हुआ हैं।

दोनों ने हरी रंग की टी शर्ट पहनी है एक लड़के ने काला पैजामा पहना हुआ है।

बाजार में बहोत सारे लोग हैं।

इसमें कुछ मैट बिछे हुए है।

कमरे में ए_सी लगा हुआ है।

इसमें एक नर्सरी दिखाई दे रही है।

गमलों में तरह-तरह के पौधे हैं।

बाहर हॉस्पिटल का नाम लिखा है--

कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

उसके पास नीले रंग का एक फट्टा है।

सामने कुछ लोग काम कर रहे हैं।

एक लड़के ने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी है।